और एक बैठने का चेयर लगा हुआ हैस्टेज पर बहुत सारे बच्चे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

और बिचाली ठीक करते हुए दिखाई दे रहा हैऔर एक पानी भरा हुआ है जहाँ पर एक सफेद रंग का कुर्सी रखा है और पानी के---

बहुत सारे किनारे में रंगबिरंगे सूट रखे हुए हैं जिसमें--

यह एक योगा क्लासेस है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ--

पिक्चरें भी दीवार पर लगी हुई दिखाई दे रही है और एक घड़ी दिखाई दे रहा है और बहुत सारी लड़कियाँ जो सूट पहने हुए और जींस टॉप पहने हुए योगा करते हुए दिखाई दे रही है।

एक आदमी और एक औरत दिखाई दे रहा आदमी ने एक काले रंग का जैकेट और एक काली टोपी पहनी हुई है।

पीढ़ा बना हुआ है जो बैठने का बना है और एक पीले रंग का प्लास्टिक दिखाई दे रहा है।

और दीवार पे आ नीले रंग की लाइटे आ रही--

लाल और सफेद रंग का शर्ट पहना है उसे ठीक बाहर में एक साइकिल और एक स्कूटी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा आदमी जो चेयर पर बैठे हुए दिखाई दे रही है कुछ सीमेंट के बोरी भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक घर दिखाई दे रहा है जो नीले रंग का है घर के बाहर में पंडाल लगा हुआ है।

और दुकान के अंदर दो आदमी एक आदमी खड़ा एक आदमी जाते हुए दिखाई दे रहा है।

और दो बाइक नजर आ रही हैजो खड़ी हैऔर एक बाइक पर एक आदमी जो सफेद रंग का शर्ट और हेलमेट पहने--

जो सीट पर बैठ के गेम खेलते हुए दिखाई दे रहा हैऔर एक हैंडल दिखाई दे रहा है।

जो नीले रंग का शर्ट पहने बाइक के पास खड़ा है।

लाइट दिखाई दे रहे जो रोशनी आ रही है अंदर में--

रखे हैंऔर कुछ आदमी जहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रही हैं।

और बोर्ड पे कुछ चार पिक्चरें चिपकाई हुई हैं।

और एक बच्चे ने काले रंग के कपड़े और एक टीचर जो माउस पकड़ के सफेद रंग का शर्ट पहने व कंप्यूटर--

दिख रहा है कार दिख रहा है जो सफेद रंग का है दो आदमी नजर आ रहे एक आदमी है।

यहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें घरें दिखाई दे रही है जो सफेद और नीले रंग के कांच से बने हुए हैं।

और घर का रंग पीले लाल में दिखाई दे रहा है और नीचे में पानी बना हुआ पानी में यहाँ पर नीले रंग का बना है।

यह एक स्कूल दिखाई दे रहा है जो पीले रंग का है और बहुत सारी खिड़कियां नजर आ रही है।

एक सामने हम दो कार दिख रहा है जो दोनों सफेद रंग में है।

ये एक बहोत बड़ी कंपनी दिखाई दे रही है बहुत ऊंची है और बहोत सारे लोहे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक बन रहा हैजो लोहे का हैकाट मशीन।

जो लोहे काटने वाली रखी है पीले रंग की उसके ठीक बगल में--

और एक आदमी का पिक्चर बना है जो पेप्सी पीते दिख रहा है।

सामाने रखी हुई दिखाई दे रही है एक पाचिल जो टूटा हुआ दिख रहा है।

और कुछ चार भैंसे नजर आ रही है जो नहाती हुई दिख रही है।

नजर आ रहे हैं बहुत बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं ।

यहां पर कुछ अंदर में आदमी बैठे हुए बुक --

रग़ टंगा हुआ दिख रहा है एक आदमी जो सफेद रंग का शर्ट पहने काला हेलमेट पहने --

काले रंग के बोर्ड पे कुछ अंग्रेजी मे लिखा हुआ है।